टेबल के ऊपर एक कॉपी और एक कैलकुलेटर और बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

बगल में एक चेयर रखा हुआ है जिसका रंग व्हाइट और ब्लैक है।

ऊपर मे बहुत सारे फैन लगे हुए है।

कपबोर्ड के अगल बगल बहुत सारे सामान रखे गए हैं।

और उनके पीछे बहुत सारे रंग बिरंगे के स्टार लगाए हुए हैं और एक ब्लैक कलर का फैन है।

और ड्रोन का रंग व्हाइट है और इस दुकान में सी_सी_टी_वी कैमरा लगे हुए हैं।

और नदी के बहोत दूर बहोत घना जंगल भी है।

और उसमें कुछ सामान रखे हुए हैं और बगल में एक स्टूल रखा हुआ है जिसका कलर ब्राउन है।

बगल में ऊपर कुछ रेड कलर का सामान रखा हुआ है।

जिसमें बहुत सारे खिड़कियां है लगी हुई और उसके अगल बगल बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।

बस का कलर येलो और शीशे का कलर ब्लैक है और बस के सामने तीन बच्चे प्रेयर कर रहे हैं।

इस दृश्य में बहुत सारे तोते का चित्र बनाया हुआ है।

और कुछ लोगे कुर्सी पर सोए हुए हैं।

दूर दूर तक बहोत सारे छोटे बड़े हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं।

और एक स्टेज बना हुआ है।

दरवाजे में ग्रिल लगे हुए हैं और बहुत सारे खिड़की भी है।

और एक आदमी नीचे बैठकर ढोलक बजा रहा है।

और उसके बगल में एक छोटा सा माइक है और ऊपर में एक वाइट कलर का फैन भी है।

और बीच में हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है।

इसमें बहुत सारे ऊपर में लाइट लगे हुए हैं।

पर नीचे फैन लगे हुए हैं और दो आदमी दिख रहे हैं।

और नीचे दूध रखा हुआ है और बहुत सारे चीज रखे हुए हैं।

और केक का रंग येलो और पिंक है और केक के ऊपर एकठे केक के ऊपर फूल का डिजाइन बनाया हुआ है।